C में फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग फंक्शन ओवर्राइडिंग हम यह उदाहरणों की मदद से करेंगे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
फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है दो या अधिक फंक्शन्स समान नाम रख सकते हैं
आर्ग्युमेंट्स की संख्या और आर्ग्युमेंट्स के डेटा टाइप भिन्न होंगे
जब एक फंक्शन कॉल होता है तो यह आर्ग्यूमेंट की सूची के आधार पर चुना जाता है
अब एक उदाहरण देखते हैं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
इस प्रोग्राम में हम एडिशन ऑपरेशंस क्रियान्वित करेंगे
ध्यान दें हमारी फाइल नेम overloadसीपीप है
मैं अभी कोड समझाऊंगी
यह आईओस्ट्रीम हमारी हैडर फाइल है
यहाँ मैं एसटीडी नेमस्पेस प्रयोग कर रही हूँ
फिर हमारे पास इंट की तरह परिभाषित एड फंक्शन है
इसमें हमने तीन आर्ग्यूमेंट्स पास किये हैं
इंट आ इंट ब और इंट सी फिर हम तीन नंबर्स का एडिशन क्रियान्वित करते हैं और हम वैल्यू रिटर्न करते हैं
यहाँ हम फंक्शन addऐड ओवरलोड करते हैं
यह फ्लोट फ्लोट की तरह घोषित किया गया है
हम दो आर्ग्यूमेंट्स फ्लोट डी और फ्लोट ई पास करते हैं
फिर हम दो नंबर्स पर एडिशन ऑपरेशन करते हैं
यह हमारा मैन फंक्शन है
फंक्शन मेन में हम भिन्न आर्ग्यूमेंट्स के साथ ऐड फंक्शन घोषित करते हैं
फिर हम वेरिएबल्स घोषित करते हैं
यहाँ हम यूज़र से इंटीजर वैल्यूज़ लेते हैं
फिर हम तीन आर्ग्यूमेंट्स के साथ फंक्शन ऐड कॉल करते हैं
और परिणाम को वेरिएबल सुम सम में संचित करते हैं
यहाँ हम परिणाम को प्रिंट करते हैं
अब यहाँ हम यूज़र से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लेते हैं
फिर हम दो आर्ग्यूमेंट्स के साथ एड ऐड फंक्शन कॉल करते हैं
और यहाँ हम सुम सम प्रिंट करते हैं
और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है
अब हम प्रोग्राम निष्पादित करते हैं
अपने कीबोर्ड पर एक साथ Ctrl Alt और ट कीज़ दबाकर टर्मिनल खोलें
निष्पादित करने के लिए टाइप करें g स्पेस ओवरलोड डॉट सीपीप स्पेस हाइफेन ओ स्पेस ओवर एंटर दबाएं
टाइप करें डॉट स्लैश ओवर एंटर दबाएं
Enter थ्री इंटीजर्स प्रदर्शित होता है
मैं 10 25 और 48 एंटर करुँगी
आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है सुम ओएफ इंटीजर्स इस 83 अब हम देखते हैं Enter त्वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मैं 45 और 89 एंटर करुँगी
एंटर दबाएं
आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है सुम ओएफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इस 134 अब हम फंक्शन ओवर्राइडिंग देखेंगे
अब अपनी स्लाइड्स पर वापस जाते हैं
बसे क्लास बेस क्लास फंक्शन को डिराइव्ड क्लास में पुनः परिभाषित करना
डिराइव्ड क्लास फंक्शन बेस क्लास फंक्शन को ओवर्राइड करता हैं
लेकिन पास किये हुए आर्ग्यूमेंट्स समान हैं
और रिटर्न टाइप भी समान है
अब एक उदाहरण देखते हैं
यहाँ फंक्शन ओवरराइडिंग ओवर्राइडिंग का एक उदाहरण है
ध्यान दें हमारा फाइल नेम overrideसीपीप है
अब पूरे कोड को समझते हैं
यह आईओस्ट्रीम हमारी हैडर फाइल है
यहाँ मैं एसटीडी नेमस्पेस प्रयोग कर रही हूँ
फिर हमारे पास क्लास अरिथमेटिक है
इसमें हमने प्रोटेक्टेड की तरह इंटीजर वेरिएबल्स घोषित किये हैं
फिर हमारे पास पब्लिक की तरह घोषित फंक्शन वैल्यूज़ हैं
इनमें हमने दो आर्ग्यूमेंट्स इंट एक्स और इंट य पास किये हैं
फिर हमने वैल्यू आ और ब संचित कीं
यहाँ हमारे पास ऑपरेशंस की तरह वर्चुअल फंक्शन है
इसमे हम दो नंबर्स एड करते हैं और सम प्रिंट करते हैं
यहाँ हम क्लास बंद करते हैं
अब हमारे पास डिराइव्ड क्लास की तरह क्लास सबट्रैक्ट है
यह बेस क्लास अरिथमेटिक को इन्हेरिट करता है
इसमें हम दो नंबर्स के डिफरेंस की गणना करते हैं और डिफरेंस प्रिंट करते हैं
अब हमारे पास मल्टीप्लाई की तरह एक अन्य डिराइव्ड क्लास है
यह भी बेस क्लास अरिथमेटिक को इन्हेरिट करता है
इसमें हम दो नंबर्स के प्रोडक्ट की गणना करते हैं और प्रोडक्ट प्रदर्शित करते हैं
फिर हमारे पास क्लास डिवाइड है यह भी बेस क्लास अरिथमेटिक को इन्हेरिट करता है
इसमें हम दो नंबर्स के डिवीज़न की गणना करते हैं और हम डिवीज़न प्रदर्शित करते हैं
ध्यान दें फंक्शन का रिटर्न टाइप समान है और पास किये हुए आर्ग्यूमेंट्स भी समान हैं
अब यह हमारा मेन फंक्शन है
इसमें हम क्लास अरिथमेटिक का एक ऑब्जेक्ट प बनाते हैं
अरिथ क्लास अरिथमेटिक का पॉइंटर है
फिर हमारे पास क्लास सबट्रैक्ट का सब्ट ऑब्जेक्ट है
क्लास मल्टीप्लाई का मल्ट ऑब्जेक्ट और क्लास डिवाइड का दिव्द ऑब्जेक्ट अब यहाँ प को अरिथ के एड्रेस पर सेट किया जाता है
फिर हम फंक्शन वैल्यूज़ में आर्ग्युमेंट्स 30 और 12 हैं
अब हम फंक्शन ऑपरेशंस कॉल करते हैं
यह एडिशन ऑपरेशन करेगा
यहाँ हम सब्ट को अरिथ के एड्रेस पर सेट करते हैं
और हम आर्ग्यूमेंट्स 42 और 5 पास करते हैं
हम फंक्शन ऑपरेशंस को दोबारा कॉल करते हैं
यह दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करेगा
अब हम मल्ट को अरिथ के एड्रेस पर सेट करते हैं
और हम आर्ग्यूमेंट्स 6 और 5 पास करते हैं
हम फंक्शन ऑपरेशंस कॉल करते हैं
यह दो नंबर्स का मल्टिप्लिकेशन करेगा
अंत में हम दिव्द को अरिथ के एड्रेस पर सेट करते हैं
और हम आर्ग्यूमेंट्स 6 और 3 पास करते हैं
अब हम ऑपरेशंस फंक्शन्स कॉल करते हैं
यह दो नंबर्स का डिवीज़न करेगा
और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है
अब प्रोग्राम निष्पादित करते हैं
अपने टर्मिनल पर वापस आते हैं
टाइप करें g स्पेस ओवरराइड डॉट सीपीप स्पेस हाइफेन ओ स्पेस ओवर2 एंटर दबाएं
टाइप करें डॉट स्लैश ओवर2 एंटर दबाएं
आउटपुट इस प्रकार दिखता है एडिशन ओएफ त्वो नंबर्स इस 42 डिफरेंस ओएफ त्वो नंबर्स इस 37 प्रोडक्ट ओएफ त्वो नंबर्स इस 30 और डिविजन ओएफ त्वो नंबर्स इस 2 अब अपनी स्लाइड्स पर वापस जाते हैं
अब ओवरलोडिंग और ओवर्राइडिंग के बीच अंतर देखते हैं
ओवरलोडिंग इन्हेरिटेन्स के बिना हो सकती है
ओवर्राइडिंग होती है जब एक क्लास दूसरी से इन्हेरिट की जाती है
ओवरलोडिंग में आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न टाइप भिन्न होने ही चाहिए
ओवर्राइडिंग में आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न टाइप समान होने ही चाहिए
ओवरलोडिंग में फंक्शन के नाम समान होते हैं
लेकिन यह उनको पास किये गए आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर भिन्न व्यवहार करता है
ओवर्राइडिंग में फंक्शन का नाम समान होता है
डिराइव्ड क्लास फंक्शन बेस क्लास से भिन्न ऑपरेशन्स क्रियान्वित कर सकता है
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा फंक्शन ओवरलोडिंग उदाहरण इंट एड तीन भिन्न आर्ग्यूमेंट्स के साथ और फ्लोट एड दो भिन्न आर्ग्यूमेंट्स के साथ
फंक्शन ओवर्राइडिंग उदाहरण वर्चुअल इंट ऑपरेशंस और इंट ऑपरेशंस समान आर्ग्युमेंट और समान रिटर्न टाइप के साथ फंक्शन्स और दोनों के बीच अंतर
एक नियत कार्य में एक प्रोग्राम लिखें जो फंक्शन ओवरलोडिंग उपयोग करके रेक्टेंगल स्क्वायर और सर्कल के एरिया की गणना करे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
अधिक जानकारी कर लिए कृपया contactspoken tutorialorg को लिखें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद